सजे गए हैं यहाँ पर मैरेज करने के लिए यह मैरेज हॉल बुक किया जाता है।

सब बहुत सारे लेबर चढ़े हुए हैं यहां पर ईटा का गथली करते हुए दिखाई दे रहा हैं।

यह सड़क किनारे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है एवं बहुत छोटी-छोटी दुकाने भी है ये सड़क पर बहुत ही --

यह रथ पर बहुत ही सुन्दर एक विष्णु भगवान के --

एक बहुत ही बड़ी शेर दिखाई दे रहे ये शेर मां दुर्गे की सवारी है।

चोंघा लगा हुआ है यहां पर बहुत सारे आदमी भी आए हुए हैं।

यह टोटो के किनारे खड़े है यह टोटो तीन चक्के के हैं यह टोटो --